आलमारी में किताब रखे बानी पेने रखी बानी एक भगवान जी का पोस्टर लगी बानी।

फुग्गा लगे वानी उ फुग्गो को आगे एक लयका बैठे वानी उने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने वानी।

इमे लाइट लगी बानी दो लइका खड़ी बानी अन्दर --

एक लइकी सड़क पे जात बानी उने नीले रंग के कपड़े पहने बानी।

पोस्टर लगे बानी इ के पास में एक कपड़ा की दुकान बानी।

उके पास में एक पत्थर की मूरत और बानी।

एक के पोल वानी उ पे पट्टिया लगे वानी।

आगे एक खंभा वानी उ का रंग लाल वानी उ के ऊपर छत वानी।

कछु लईका मास्क लगात वानी।

एक पेड़ बानी एक और ये साइड कछु बने बानी।

ई दो मूर्ति बानी ई की मुड़ पे बड़े-बड़े मुकुट लगे बानी।

तथा अपने हाथ से पकड़े बानी बोहोत सारी चटाई बिछे बानी।

आगे बोहोत सारे गमला रखे बानी उमे हरे पौधे बानी।

एक लई का बाहार मुवाल पे बात करेवानी ऊके बगल में एक लईका और खड़े वानी।

लाइट लगे बानी फ्रिज रखे बानी उके पास में एक मशीन रखे बानी रखे बानी।